हेल्लो गाइस यहाँ पे सब बैडमिंटन खेल रहे हैं दो तीन प्लेयर सब हैं।

आ ए सिटिंग कर ने यहाँ पर अ अ सब लोग--

टाइम टेबल लगा हुआ हैं दस बजके तैतीस मिनट होरा हैं फेन हैं--

मिटटी हैं साइल हैं साइल से म मिट्टी से कूड़ा हुआ हैं।

लाइट लगे हुए हैं तार लगे हुए हैं वा वहा पे बहुत सारे बस लगे हुए हैं वेटिंग के लिए--

हम्म चर्च है यहाँ पे अपना मोमबत्ती ले कर अपना क ड़ने के लिए यपर दो तीन लोग गमले लगा हुआ--

पिंक कलर की लाइटें लगी हुई हैं पीछे रेड कलर की बिल्डिंग है।

सो गाइस आप देख रहे है यह एक पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप है आप जैसा जानते है यहाँं सब पेट्रोल लेने आते है यहाँं पे एक बाइक है बाइक वाला पेट्रोल लेके जा रहे है।

बादल हैं अच्छे अच्छे कलर में फोटो अच्छा सा खीचा सकते ह--

टमाटर से सब्जी बना सकते हैं टमाटर बहुत सारे होते हैं हरा ब्लू ल लाल भी होते हैं टमाटर से सब्जी टमाटर सेहत के लिए अच्छा है इज गुड फॉर हेल्थ। --

हेल्लो गाइस ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पेट्रोल पंप हैं इंडियन ऑइल का पेट्रोल पंप हैं दो गाडी लगा हुआ हैं यहाँ पे--

सो गाइस आप यहाँ पर देख रहे है यहाँ पर यहाँ पर एक पाउच और पथर है पेड़ यहाँ पर सब रेकिंग कर रहे है यहाँ पर बहुत लोग मजा आ रहा है।

ऐसा हैं की आप लोग जानते आप लोग भी यहाँ पे जाते होंगे यहाँ पर बहुत सारे--

यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर तीन चार लोग पांच लोग हैं यहाँ पर हैं।

दो तस्वीर नए ब्लू कलर के एक ग्रीन कलर के यहां पे पेगी करके एक कोई शॉप है।

वाटर टैंक हैं एक ब्लैक वाटर टैंक हैं एक ब्लू कलर का बेक ग्राउंड हैं--

पाइप से पानी दे रही हैं वहां पर एक स्ट्रीट लाइट लगा हुआ हैं पीछे दो दो वाइट कलर के बिल्डिंग ह--

यहाँ पर उम एक गेट हैं पग्स हम एक पीरियड के साथ अटैच्ड थे।

सुभह जब यहाँ देखे यहाँ पेट्रोल पंप है यहाँ पे बहुत लोग पेट्रोल ले रहे है बी बगल में --

हाँ हरा भरा पेड़ लगे हुए है एक कार है दो तीन आ बहुत सारे आदमी पांच दस लोग आदमी है।

इंडियन आयल हैं कटार टैंक हैं यहाँ पर एक पेट्रोल पंप मिलता हैं पेट्रोल मिलता हैं।

रैलिंग हैं ब्लैक कलर का वाइट कलर का ब्लू कलर का रेलिंग सब हैं लाइट क--

वहाँ प्लस का साइन यू नो प्लस का साइन व्हाट इस दिस दी ज--

सो गाइस यहां पे दखरे यहां पे नर्सरी यहां पे बोहोत से रंग बिरंगी फ्लावर्स है थिस इस फ्लावर्स वैरी ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस थिस इस --

टेंट लगा हुआ है पण्डे के इसमें पानी की सप्लाई हो जाये यहाँं पर बस टेंट तक बच्चे सब रेह सकते है यहाँं पे सब घूमने के लिए आते है यहाँं पर स्टूडेंट रह सकते है कॉलेज स्टूडेंट --

गाईज़ ये आप देख रहे हैं ये एक एप्पल का स्टोर है यहाँ पर एक सेकंड हैण्ड आईफ़ोन से मिला हुआ है --

फ़ोन सब रखे हुए है यहाँ पर एक सेल्स मेन हैं दो तीन सेल्स मेन हैं तीन चार कस्टमर हैं एस ट्वेंटी सीरीज रखे हुए हैं यहा पर--

कार से जैक के ऊपर उठा दिया है कार को या फिर कार हवा में है निचे से पेसर मार रहा है पानी के पेसर से निचे से मट्टी सब साफ होता है।

सो गाइस यहां पर देख रहे हैं मानसरोवर स्टेशनरी की दुकान है हमारे यहां सभी प्रकार के कॉपी पेन पेंसिल --

ये टाइल्स लगे हुए हैं प्रेस ता लाइट लगे हुए है।

अ पग्सेंत में टीडी डिमांड करके लगा हुआ हैं जगह वहां पे बैग मिल रहा हैं।

सुकाजी ये देख रहे हैं ये एक छोटा सा नर्सरी प्लस दुकान हैं नर्सरी आगे यहाँ पर--

गाडी जा रही हैं उधर येल्लो कलर का बोर्ड हैं येलो कलर का कोई एक लेफ्ट साइड में सप्ड़ना--

हमे उने बोर्ड लगे हुए है इसपे कुछ लिखा हुआ है पेकसेन में डीगल गेट है गेट के पीछे वहा पर बहोत सारे--

यहाँ पे खाने पीने का जगह हैं यहाँ बैठने नैपकिन्स हैं ए_सी लगे हुए ह--

अ सोचा इसके पास मोबाइल हैं उम दोनों जीन सकते हैं उपर की और बैक ग्राउंड --

यहां पे एक टेबल टेबल पे नैपकिंस वगैरह दो तीन यहां पे

अ बिस्किट्स है चिप्स है खाने पिने का चीज़े है यहाँ पे रखे हुए है पेट्रोल है।

सो गाइस यहाँ पर देख रहे है सब यहाँ पर पेड़ रोपण लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे तिन चार पाच पेड़ है पोच पाच छे स्टूडेंट्स है ।